कुछ बाइके खड़ी हुई है कुछ लोग दिख रहे है नीचे एक रेड कलर का पैंट पुता हुआ दिख रहा है।

वाइट कलर से स्टेट बैंक लिखा हुआ है और ए.टी.एम. लिखा हुआ है और कुछ अ पास में एक शटर लगी हुई है दिख रही है।

हैं और नीचे थोड़ा सा अ पुराना होने की वजह से निकल सी गई है स्लेटी कलर में हुए हैं ऊपर स्काई ब्लू कलर का आसमान दिख रहा --

और कुछ बैलूंस लगे हुए हैं पिंक और डार्क ब्लू कलर के।

इस पिक्चर में एक शॉप दिख रही है जिसकी रेड कलर की चेयर हैं और एक कांच लगा हुआ है जिसपे एंड जेंट्स पार्लर लिखा हुआ है जेंट्स पा--